जो कि मेबी अ आर्टिफिशियल लग रहें हैं क्युकी रियल ऐसे नही होते।

और है न और वाइट कलर का आसमान है और पुरे न पानी वानी दिया हुआ गया है पूरा सा अच्छा सिस्टम दिया हुआ है जो की बहुत अच्छा लग रहा है देखने में--

ऑरेंज कलर का एक एलो कलर का लाइट वाइट कलर का वो ह एंड रे और येलो एंड ऑरेंज कलर की दीवाल है।

यहां बहुत बड़ा गार्डेन है बेसिकली ये रैए-रात की पिक्‍चर है इसमें कुछ शो हो रहा है।

कुछ पत्थर भी दिख है बोर्ड है जो की और आधी ऊपर है माउंटेन भी दिख रहा है पूरा सा सेटअप किया हुआ गया है।

ऐसा सिस्टम दिया हुआ है और ये बैंक है।